इस तस्वीर में बड़ी सी मोटरसाइकिल की शॉप बताई गयी हुई हैं।

पुस्तकालय के अंदर बहुत सारी किताबे रखी हुई है।

इस तस्वीर में बड़ी-सी खाई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में किसी का शादी का जस्न मनाया जा रहा है।

सारे लड़कियां ने एक ही तरह के कपड़े पहने हुए हैं।

इस पुस्तकालय के अंदर बहुत सारे पुस्तकें --

इस तस्वीर में बड़ी-सी जमीन दिखाई दे रही हैं।

और इस दुकान का नाम --

बच्चे माकन की ईट पर खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा-सा तालाब दिखाया हुआ है।

पुस्तकालय के अंदर कई सारे लोग पुस्तकें देख रहे हैं।

बाल कटाने की दुकान के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है।

वो सोफे के रंग सफेद रंग है।

उन में से केला चीकू और दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस चौकी के बाहर दो-तीन पुलिस की गाड़ियाँ हैं पड़ी हुई हैं।

फोटो दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पोल दिखाई दे रहा है। पोल के नीचे बहुत सारा पाणी है।

इस शोरूम का नाम टाटा मोटर्स है।

एक बड़ी सी काँच की कपड़े की दुकान हैं।

और वो लक लड़की ने कपड़े भी बहुत सुंदर पहने हुए है।

घर के आस-पास बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं।

और सड़क के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं।